ए एक बोर्ड है जिसपे माँ लल्लेश्वरी इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

इस बोर्ड पर फर्नीचर के थोक एवं फुटकर विक्रेता लिखा हुआ है।

यह व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रहा हो।

यह एक माल का दृश्य लग रहा है जिसपे वी टु वी टु लिखा हुआ है।

यह किसी रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य है ऐसा लग रहा है जैसे यह अभी अभी खुला हुआ है।

चारों तरफ हरी हरी घास और वृक्ष लगे हुए हैं।

पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं।

ढेर सारे नाव जैसे कुछ सामान रखे हुए हैं जहां पे लोग शायद नहा सकते हैं।

बैठने के लिए ढेर सारे कुर्सी रखी हुई हुई है बगल में और हरे रंग का एक टेंट लगा हुआ है।

पीछे ढेर सारे झाड़ियां हैं जो कटी हुई है।

और इस दृश्य इस घर के सामने की दीवाल औरेंज रंग की है पीले रंग की है।

यहां पर ये मनी प्लांट का वृक्ष है पौधे हैं।

सामने डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें अलग अलग तरह की चॉकलेट रखी हुई हैं।

एक व्यक्ति उन्हें ट्रेन कर रहा है बच्चे काफी छोटे हैं।

नीली टी शर्ट पहने हुए है एक लड़का लाल शर्ट पहने हुए है।

ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं सामान कुछ सामने रखा हुआ है।

यहां पे बहुत एक बड़ी जे_सी_बी मशीन रखी हुई है।

यह एक किले का पुराना दृश्य लग रहा हुआ है।

सारे मुर्गें मुर्गियां जो हैं वो सफेद रंग के हैं।

एक लाईन में बने हुए हैं सारे के सारे पिंजड़े और ढेर सारी मुर्गियां उनके अंदर बंद हैं जो दिखाई दे रही है।